मैदान घास का मैदान है।

यह स काले कलर का है यह वाइट्स है इसका माथा --

तेल पंपा है मेरे हिसाब से।

एक बंदा दिख रहा है दो बंदे दिख रहे हैं।

क्रीम कलर के गेट से लग रही हैं एक कुर्सी भी पड़ी है।

चार बसें खड़ी हुई हैं।

बियाह शादी स्टेज वगैरा की मंच लगी हुई है।

यहां पार्क में इस तरफ में गाड़ी खड़ी है।

पीछे स्कूल की बस खड़ी है यह पीछे ये हॉस्टल वगैरह है।

यह एक गाड़ी है इसके दोनों टायर बिगड़े हुए हैं।

गाड़ी का ढक्कन खुला हुआ है।

यह एक कॉलेज की फोटो है।

ऊपर एक फ्लोर बना हुआ--

होटल उसी का कमरा है जिस पर कुछ चित्र बने हुए हैं दिल दिल के निशान लगे हुए हैं।

यहां एक कंकाल पड़ा है।

नीली बेंच है पीछे है पर्दे लग रहे हैं।

इस तरफ दवाई रखी है ट्रीटमेंट की फीस फिटर रखे हैं।

यह एक होटल है होटल के अंदर चार पांच कुर्सी पड़ी हैं।

एक कुर्सी पर आदमी बैठा है ऊपर सामने एक हरे कलर का बोर्ड लगा हुआ है।